पार्क है पार्क के बीच में एक पानी बन का रखने का पानी का स्थान बना हुआ है एक तालाब टाइप का बगल में --

फिर शीशा भी लगा हुआ है और एक स्क्रीन पर लग रहा है जैसे टीवी लगा है ऊपर में--

बहुत सारा सामान है लहसुन भी लग रहा है और बोरा में है पीछे भी बहुत सारा सामान है एक--

योगा करते दिख रहे हैं और हॉल के दाहिनी साइड पिलर है उसके बाद से बहुत बड़ा हॉल है हॉल के पीछे एक तरफ--

मॉल है मॉल के सामने में शीशा का दीवार है दीवार पर--

औरसब एक्सरसाइज कर रहे हैं पीछे की ओर हुए हैं ऊपर फैन जो फैन दिख रहा है पीछे खिड़की है।